धुंध सी छाई हुई है दो नाव दिख रहे हैं दोनों लड़के एक काली टी-शर्ट में एक हरे टी-शर्ट में।